ये गाड़ी देखने में सफेद रंग का है और ये आदमी हाथ से पानी से इसको साफ कर रहा है।

यहां पर सामने गाड़ी बाईक इत्यादि पार्किंग की गई है।

यहां पर तो राशन के दुकान दिख रहे है।

यहां पर एक दुकान खुला है जिसमें कुछ शाप नहीं है और आसपास बहुत सारे दुकान है कुछ लोग सब्जी के सामने खड़े हुए हैं।

यहां पर एक आदमी बस के सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर विभिन्न रंग के विभिन्न तरह के चीजें है जो लोग इस्तमाल करते होंगे।

यहां पर सामने रखी बाल्टी दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ लोग दिख रहे हैं शायद वो एन_सी_सी के लोग है।

साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं हरियाली से भरा हुआ--

इनके साइड से सफेद रंग की बाउंड्री भी दिखाई दे रही है।

यह दोनों गधे शायद इंसानों के द्वारा यहां पर रखे गए होंगे।

ये एक छोटा प्राइमरी स्कूल दिख रहा है।

ये एक चर्च है जो सफेद एवं रंग का है।

इस पार से उस पार दिखाई दे रही है चारों तरफ हरियाली है।

यहां पर बहुत सारी सामग्रीया रखी हुई है सजने संवरने के लिए।

ये नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पॉलिटेक्निक का एक एक मंजिला भवन दो मंजिला भवन है।

साइड में एक बैनर रखा हुआ है जिसमें लिखा है बांग्ला साहित्य केंद्र।

देखने मे एक प्रशिक्षण के लिए एक रूम लग रहा है शायद।

देखने में लग रहा है कि यहां पर लोग आते होंगे और आकर यहां पर बैठकर अपना भोजन ग्रहण करते होंगे।

देखने में एक बगीचा लग रहा है और बगीचे के ठीक बीचो बीच एक टेबल और कुर्सियां रखीं हुई है।

यह एक बैंक का दृश्य है जहां पर फेडरल बैंक लिखा हुआ है।

एक साइड में एक ए_टी_एम है और दूसरे साइड में एक कॉलेज ।

आया जा रहा है कि यहां पर लिखा हुआ है हमारे यहा सभी प्रकार के कॉपी पेन पेंसिल रबर कंपास एवं अन्य प्रकार के स्टेशनरी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है।

ऊपर से साइड में फन दिखाई दे रहे हैं।

दिखने में एक पुरानी इमारत लग रही है जिसका रंग एकदम उतर चुका है।

और सामने भी एक छोटा पंखा दिखाई दे रहा है।

यहां पर पुरुष एवं महिला दोनों उपस्थित है।